यहां पे आजू बाजू में बहोत सारी शॉप है शॉप के बाहर एक यूनियन बैंक है बाहर कुछ आदमी लोग खड़े हैं बहोत सारी बाइक खड़ी है।

एक बहुत ही अच्छा होटल है होटल की दीवार में एक छोटी टीवी लगी हुई टेबल पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है बाजू में चेयर और टेबल रखी हुई है।

रात का बहुत ही अच्छा मंजर है पूरा रोड खाली है लाइट से सब चमक रहा है आजू बाजू में बहुत सारे घर है अच्छे से डेकोरेट --

यहां पर आजू बाजू में बहोत सारी शॉप है शॉप के ऊपर घर है नीचे किराने मा की दुकान है दुकान में भी बहोत सारे सामान लगे हुए हैं।

यहां पे पूरा अंधेरा है उसके बाजू में एक सामान रखा हुआ है बहुत सारे सामान है कोने में पूरा खाली है घर रखा हुआ।

दीवारों में बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है सोफे है यहां पे ब्लैक कलर के कुछ मैगजीन है।

सामान रखे हुए हैं बहुत बड़ी मशीन है ब्लू कलर की और आजू बाजू में भी कुछ रखा हुआ है।

बहोत बड़ा मैदान है मैदान के आजी बाजी में बहुत सारे पेड़ है बाजू में बहुत सारे स्टोर बेंचेस रखी हुई कचरे का डब्बा रखा हुआ है।

बहुत ही अच्छी एक बिल्डिंग बनी हुई है कांच की कांच की बिल्डिंग के बाहर कुछ लेडीज साड़ी पहन के खड़ी है उसके बाहर एक मूर्ती रखी हुई है।

ये किराने की दुकान है किराने की दुकान में बहोत सारी चीज लगी हुई है कुछ डब्बे है उसके अंदर भी कुछ सामान रखा हुआ है इतना सारा --

एक शॉप है शॉप के अंदर बहुत सारी टेबल और चेयर लगी हुई है शॉप के साइड में फ्रिज रखा हुआ है फ्रिज के अंदर बहुत सारी ठंडे की बोतलें है।

एक सर्विस सेंटर है एक आदमी सर्विस कर रहा है बाइक की एक आदमी बैठा हुआ है उसके सामने बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

एक बहुत बड़ा रोड है रोड के ऊपर से एक बड़ा ब्रिज गया है ब्रिज के सामने बहुत सारी दुकानें हैं नीचे साइड में कुछ लोग रोड पे च रहे एक बस जा रही है।

एक घर है घर के आमने सामने बहोत सारे दरवाजे बने हुए बहोत सारे रूम है बीच में एक टेबल है टेबल के ऊपर कुछ रखी हुई है।

एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर बेनर लगा हुआ है इसमें एरो में एग्जिट फिल्म एंड टीवी ऐसा लिखा हुआ है आजू बाजू में पेड़ है।

एक स्टोर है स्टोर में बहुत सारे स्पीकर रखे हुए हैं टी_वी रखी हुई बहुत सारे सामान लटके हुए हैं लाइन से रखे हुए सब सामान हैं।